यह पिक में एक शादी की पिक है जिसमे स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और बहुत सारे लोग स्टेज पर चढ़े हुए हैं |

स्टेज के निचे कुर्सियां लगी हैं उसपे कुछ बालक-बालिका बैठे हैं और स्टेज बहुत शानदार है और ब्लू कलर की लाइट जल रही है |

इसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं स्लाइडिंग पर और यहाँ हरे और लाल कलर की स्लाइडिंग है |

यह फोटो एक तालाब मे की है जिसमे एक बोट में दो लोग अ नाव चला रहे है।

यहाँ फोटो में मैनेजर वो आंटी को ई-रिक्शा की चाबी दे रहे है और यह ई रिक्शा का कलर लाल है।